और कब्बडी का मैच हो रहा है।

नीचे एक बोर्ड है जहाँ पे वन लिखा हुआ है ।

एक व्यक्ति है जिसकी शर्ट का कलर ब्लैक है पैंट का कलर ग्रे है ग्रे लाइट ग्रे है।